दी हुई तस्वीर में एक कैफ़े दिखाई दे रहा है जिसके सामने के दरवाज़े में --

कांच का लगा हुआ है और परदे देख रहे हैं ऊपर बोर्ड देख रहा है एक बाइक खड़ी देख रही है।

तस्वीर में बहुत-सी दुकानें दिखाई दे रही हैं एक दुकान पूरी खुली हुई है एक आधी खुली हुई है।